ये चित्र मे कुछ लोग ए.टी.एम. मे है जो पैसे निकाल रहे है और एक पुलिस भी टहरा हुआ है और शर्टर शटर खुला हुआ है।

ये चित्र मे कुछ मंदिर का दिख रहा है जहा पर बहुत सारे लोग है और अंदर की और कुछ लोग जा र हैं है बाहर की अर-- और भी कुछ लोग --

ये चित्र मे एक आदमी सेल्फी ले रहा है कम्पुटर के साथ पिच्छे की और एक आदमी है दो कम्पुटर दिख रहे है और कुलर चल रहा है।

जिसमे कुछ लोग अंदर की और जा रहे कंपनी मे और बाहर की और बड़े पाम्प्लेट्ट्स लगाए हुए है।

ये चित्र वी_सी इलेक्ट्रिक वेहिकल का हैं जहाँ पर कुछ वेहिकल न्यू रखे हुए हैं और फूलो से सजा हुआ हैं और बलून्स पिंक अँड वाइट अच्छे लगाए हुए है।

ये चित्र में कुछ बच्चे लाइन सर लाइन से बैठे हुए हैं दीवार से लग कर और दो टीचर्स ठहरी हुई हैं और सारे बच्चे बैठे हुए हैं।

ये चित्र में एक औरत और एक आदमी फोटो ले रहे हैं जिस पर लाइट की साइड पर अच्छा सा सजा हुआ है।

ये चित्र में कुछ आदमिया बिल्डिंग बना रहे हैं सिर पर मटकियाँ लेकर जा रहे हैं और लकड़ियाँ लगाई हुई हैं।

यह एक चित्र में बहुत सारे लोग ठहरे हुए है और एक आदमी बैठा हुआ है कुछ बोल रहा है और फैन लगा हुआ है घड़ी लगा हुआ है और बलूंस भी लगाए गए है।

ये चित्र मे कुछ लोग ठहरे हुए है और कुछ पढ़ रहे है और औरता भी है और आदमीया भी ठैरे हुए है और एक आदमी बूक हाथ मे लेकर पढ़ रहा है।

यह चित्र एक आदमी हैं जो बच्चे का पाँव दबा रहा हैं और सर के पास चप्पल रखी हुई हैं पीछे की और कुछ लोग भी हैं।

ये चित्र जिजस का है क्रिसमसका जो बच्चे टोपी पेहनकर ठहरे हुए है।